यहाँ मैदान काफ़ी बढ़िया है | इस मैदान में एक कच्ची सड़क है | यह सड़क पर दो तीन लेडीज जा रही है | यहाँ पर एक साइकिल भी ले जा रही है | इस मैदान में बड़े बड़े पेड़ भी है | यहाँ मैदान काफी आकर्षक है ।

यह मैदान काफी बड़ा है। इस मैदान के किनारे पहाड़ भी हैं। यह मैदान में एक नली भी है जिसमें पानी बह रही है। इस मैदान पर जगह-जगह पानी है। यहाँ छोटे-छोटे पेड़ भी हैं। यह मैदान काफी सुन्दर है।